तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं।

और दुकान दिखाई दे री है।

और कुछ आदमी वगैरह दिखाई दे रहे हैं।